वो आते हैं और पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं।

और काफी अच्छा यह यहाँ पर हम जो देख रहे है के वो दो झूले है और दो स्लाइडर है जो बच्चों के लिए है फिसलने वाले और जो चीज वाटर पार्क में होती है वो भी इसी में है।

तस्वीर है इस तस्वीर में हम देख रहे है कि ये एक स्वीट कार्नर है और स्वीट कार्नर जो होता है जो कहते है जहां पे मिठाई वगैरह मिलती है।